ये म्यूजिक सिस्टम का पियानो है इसे बजाया जाता है इसका रंग लाल है और ये बजाने वाला जहा पर है उसका कलर काला और उजला हैबगल मे एक बकशा है जो ब्राउन कलर का है ।

और भी यहां पे बैग्स है जो भरे हुए है ।

यहाँ पर एक इंसान जो वर्जिस कर रहा है उसने अपने पैरों के नीचे एक बड़ा सा बैलून टाइप का कुछ लिया हुआ है।

य-यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ है यहां पर महिला पुरुष और बच्चे भी है ऊपर का आसमान जो खुला है जो काले रंग का है सामने सीढ़ी है जिस पर लोग आ--

यहाँ पर घर बन रहा जहा पर बहुत सारे मजदुर काम कर रहे है घर बहुत ही अच्छा बना हुआ है यह दो रुमो का है नीचे बालू ईटा और गिट्टियो का ढेर पड़ा है।

यहाँ जमीन पर लोहे का कोई चीज है जो गोल आकार में और लम्बे आकार में है यह जमीन जो मट्टी का है।

यह मेले मे बहुत सारे लोग भी है यहां पे दो लड़के आपस मे मिल रहे है एक दूसरे से हाथ पकड़े हुए है एक के व्हाइट कलर का शर्ट पहना है और एक ब्लैक कलर का जैकेट पहना है।

यहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे है बाहर बालू गट्टी और सीमेंट का वह मसाला बना रहे है सामने बहुत खूबशूरत सा पेड़ है और उसमें फूल भी है जो काफी प्यारा लग रहा है।

पेड़ का कलर हरा है फूल का कलर नारंगी है यहां पे बालू का ढेर है यह भी नारंगी का लग रहा है एक इंसान जो खड़ा है।

यहां पर एक इंसान जो पोज़ देकर खड़ा है जो नाव पर खड़ा है यहां पर दो नाव है और एक नाव जो उलटी है और यहां पे थोड़े से पानी भी हैपीछे बहुत सारे पेड़ हैजो हरे रंग है ।

और नीचे का घास जो उजला लग रहा है और ऊपर खुला आसमान है जो उजला और ग्रे कलर का लग रहा है ये लड़का लाल कलर का शर्ट पेहना हुआ है ।